यहा पर एक सामने ही पे एड पार्क वहानतळ ऐसा एक प्लेक्स लगा हुआ है उसके अंदर टू व्हीलर एड फोर व्हीलर --

और उसके सामने ही एक बड़ा सा रास्ता है जो ग--अह फोर व्हीलर लगाई हुई है उनके बीच-- बीचों- बीच एक फ़्लेक्स भी लगा हुआ है।

इस फोटोमें एक अ पोस्ट का ऑफि पोस्ट ऑफिस दिख रहा है अ रेड कलर की फरशी है लेकिन कुछ फरशी --

यहां पर अं फ्लेक्स लगा हुआ है आधार का भारतीय डाक विभाग आधार नाव नोंदणी ऍनी आणि अध्यातन सेवा --

यहा पर एक दीवार दिखाई दे रही है येल्लो कलर की दीवार है और उसके ऊपर दो बोर्ड लगाए हुए है दोनों बोर्ड --

हौर्स ऑफ बिज़नेस ऐसा एक बोर्ड लिखा हुआ है उसके उपर चौकशी तिकीट विक्री और रजिस्टर फील्ड पोस्ट --

इस फोटो मे एक छोटीसी पार्किंग है ऊपर एक बड़ा जो शेड बना हुआ है।

यहा पर एक बडिस बड़ावाला एक बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके उप्पर इ पेमेंट ई_एम_ओ आय_एम_ओ लेटर एवम रजिष्ट रेजीस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट --

एक बड़ी वाली पार्किंग है और अ जो आगे गेट दिखाई दे रहा है गेट के बिचो बीच से अ सभी--

और उसके सामने ही एक आदमी खड़ा है उसके पीठ पर एक बैग बैग लगी हुई है और एक जो पत्रा है वो भी दिखाई दे रहा है।

इस पार्किंग में बहुत सारे टू व्हीलर खड़ी हुई है उसपे अ ऐसे कुछ अ अ अ जो पिल्लर है उसके ऊपर नंबरस् भी दिखाई दे रहे है।

में एक नोटिस का बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है और अंदर एक आदमी खडा अ आदमी बैठा हुआ है उसके सामने एक लपटॉप भी है।

कुछ वर्कर्स है जो आह पेट्रोल पम्प पे काम करते है कुछ फोर व्हीलर्स है एक ऑटो भी दिखाई दे रही है।